ये एरिया किसी मॉल का लग रहा है।

अंदर की खिड़कियां कांच और लकड़ी की दिख रही है।

दूर में पानी की टंकी दिख रही है और पाइप भी दिख रहे हैं पड़े हुए।

स्टेज के पीछे काले कलर का पर्दा टंगा है और आगे भी बड़े बड़े साउंड लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे खाने पीने के समान रखे हुए हैं।

रोड पर बहुत सारी बाइक और स्कूटी पार्क है।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है सर्कल बनाकर और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।